ये एक तरबार नज़र आ रहा है सामने उसके साथ ही काफी सारे द्रव्त भी है ।

जी ये गाड़ी नजर आ रही है इसके साथ अं इधर सीटें लगी हैं सीटों के साथ ही उन्होने--

ये एक इबादत गाह नजर आ रही है इसमें बहोत सारे लोग आए हुए अपनी फैमिली के साथ--

इमारतो पर लाइट से उसको डेकोरेट किया गया है एक अआ तीन दरवाजे नज़र आ रहे है जिसमे लोग खड़े हुए है ।

ये एक सुकूल का कमरा जमात है यहाँ पर एक डाइस पड़ा हुआ है ।

तहकीकात कर रे है दो से तीन गाड़िया अ सरकारी गाड़िया खड़ी है ।

ये दो मंजलम तीन मंज़िला मार्केट नज़र आ रही है और इसके ऊपर बहुत सारे बोर्ड भी लगे --